मुझे फोटो में गिलास दिखाई दे रही है।

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में बादल दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में शोभा मेडिकल एजेंसी का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे फुग्गे दिखाई दे रहे है।

बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।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

बहोत सारी मछलियां दिखाई दे रही हैं।

लाइटें दिखाई दे रही है।